यहां पर कुछ बड़े पेड़ और कुछ खेत और कुछ मकान भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ पर एक तसल्ला भी नजर आ रहा है।

यहां पर एक बाल्टी और एक गेट भी नजर आ रहा है।

यहां पर कुछ स्कूटर खड़ा हुआ है साइड में एक कुत्ता है।

एक बोर्ड भी लगा हुआ है यहां--

और यहां पर कुछ पेड़ पौधे और एक बल्ब भी नजर आ रहा है।

एक टैंकर दिखाई दे रहा है यहां पर एक जे_सी_बी मशीन भी दिखाई दे रही है।

और यहां पर खुला मैदान भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पर आसमान और कुछ बदल भी दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारा पानी नजर आ रहा है।

एक चश्मा है। पीछे ए_सी लगी हुई है।